फिसल पट्टी पे फिसल रहे हैं और मज़े से खेल रहे हैं |

पाउडर के डब्बे हैं और हैंडवाश है |

एक गाड़ी पे एक व्यक्ति खड़ा हैं।

पानी की केन हैं कुर्सी हैं एक ब्लैकबोर्ड हैं।

वहां पर ऊपर बोर्ड भी लगे हैं।

यह इमेज एक सुपर मॉल की हैं।